एक आदमी खड़ा है और बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

ओर उस रोड पर ट्रैफिक लगा हुआ है।

इस बिल्डिंग के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं।

इस मंदिर में माता की मूर्त रखी हुई है।

मुझे इस चित्र में एक छत नजर आ रही है।

कुछ औरतें और कुछ लड़कियाँ डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहीं हैं।

मुझे इस चित्र में एक होटल का रूम --

मुझे इस चित्र में एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है इस ग्राउंड पर--

मुझे इस चित्र में एक ग्राउंड नजर आ रहा है।

दिखाई दे रहा है उस ग्राउंड पर एक मेटाडोर --